बहुत बड़ा होटल बावे एमा बैठे खाते बहुत सारी कुर्सी बा पंखा बा लाइट बा पर्दा लगल बा चारों तरफ लाइटिंग बा।

पंखा लागल बा फोटो लागल बा बहुत सुंदर लागता रेड कलर से चेयर के कलर रेड बावे।

बहुत बड़ सीढ़ी बा | स्टेशन वाला सीढ़ी लागा ता लाल और सफ़ेद कलर के बा | हरा हरा पेड़ बा लाइट बा।

बहुत अच्छा जयमाल बावे कुर्सी रखल बा दूल्हा दुल्हन के बैठे खातिर कैमरा लगल बा डिस्को लाईट लगल बा।